ये एक मछली की दुकान है जिसमें काफी किस्म की मछलियां पड़ी हैं कुछ छोटी कुछ बड़ी --

ले रहे हैं जिन में ये सब लोग आ रहे हैं।

और ऊपर छत पर काफी बड़े-बड़े बलब चल रहे हैं।